यहाँ पर बहोत बड़ा-बड़ा घर है बैलून दिख रहले।

यहाँ एक लग रहले सब्जी मंडी हेय। ऊपर में --

कुर्सी लगल हेय। --